सारे पेड़े भी लगी है पेड़ों के पीछे एक बहुत बड़ा महल सा बना दिखाई दे रहा है।

पेड़े के पेड़ के बगल से ही कुछ तिल ठेले वगैरह लगे हैं।

जिसमें तीन बड़े बड़े पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे--

यहां पर हमें सामने से बहुत सारे घर दिखाई दे रही हैं।

वहां पास ही में एक पुलिस वाला भी खड़ा नजर आ रहा है।

यहां पर हमे सामने काफी सारे घर दिखाई दे रहे है और कुछ बहुत सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे है।